इस दृश्य में बहोत सारा स्टे स्टेशनरी का सामान दिखाई दे रहा है।

उसे दुकान के दीवार पर एक पोस्ट भी चिपका हुआ है।

यहां पर सामने में बांस भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मोबाइल फोन के डब्बे रखे हुए हैं सेल फोन पे।

सेल्फ पे वीवो का टैग लगा हुआ है।

यहां पे एक पेड़ का तना दिख रहा है।

यहां ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां पंखा दिखाई दे रहा है यहां ट्यूबलाइट भी दिख रहा है।

इस दृश्य में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान पे स्नेक बार लिखा हुआ है।

यह एक ऑफिस का सेट अप है यहां पे टेबल् और चेयर्स भी दिखाई दे रहे है।

यहां पे बिजली का पोल भी दिख रहा है और यहां पे झंडा भी दिख रहा--

यह एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग है हॉस्पिटल के बिल्डिंग के बाहर में सीढ़ी दिख रहा है।

इनमें से कुछ दो प्लेट्सो में खाने की वस्तुएं रखी हुई है।

यहां पे बहुत सारे ईंटें भी दिखे दिख रहे हैं यहां पे घने पेड़ भी दिख रहे हैं।